इसने गले पर एक रुमाल बंधा बांधा है और इसके बालों का रंग काला है।

और इनकी कोट व्हाइट कलर्स की है और एक नर्स खड़ी हुई है उसने ग्रीन कलर की टोपी लगाई हुई है और ब्लैक कलर की--

ये यहां पर शॉप है और यहां पे--

और यहां पे अ फॉग रखे हुए हैं और सेरेलेक्स रखा गया है।

अ शीशे के शेल्फ लगाए गए है।

ये एक रूम है और यहां पर बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है।

ये लड़कियां डांस कर रही है।

सफेद है और बालों में जो रबर है वो सफेद कलर है।

शेव कर रहा है इसने वाइट और रेड एप्रेन पहना हुआ है।

ये एक रूम है और यहां पे पर्दे--

येलो है ग्रीन है पर्पल है।

एक ऑफिस है और यहां पे कुछ लोग काम कर रहे हैं और ये टेबल है।

और ट्रक येलो और ब्रिक कलर की है।

ब्लैक कलर की शूज है उसके बालों का रंग भी ब्लैक है।

इसने ब्राउन कलर की पेंट और वाइट प्रिंटेड --

कंगन है और उसने हाथों को भी ऊपर रखा है और ऐसे ही--

ये सामने दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

और ये आदमी एक अ बैठा हुआ है।

और आदमी दो खड़े हैं वो कुछ काम कर रहे हैं।

और यहां पे स्ट्रीट लाइट्स जल रही है।